ये काफी सुंदर एक मूरत बनाई गई है दुर्गा जी हैं जिसमें।

और कार्तिके गणेश जी हैं और एक साइड हनुमान जी एक साइड संकर जी।

और बहुत सारे लोग फोटो निकलवा रहे हैं बीच में पंडित जी भी खड़े हुए हैं।

जिसमें काफी सुंदर क्रिसमस ट्री वाले पेड़ लगे हुए हैं बाहर एक--

और दुकान के बाहर काफी सुंदर बोर्ड लगा हुआ है।

और आप देख सकते है दुकान में कांच ही कांच लगे है जिसके रास्ते पे कार और ट्रैक्टर चल रहा है जो कि नजर आ रहा है।

आप देख सकते हैं सामने काफी सुंदर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और कुछ लोगों की गाड़ियां और कार भी खड़ी हुई है सामने ही।

बोर्ड लगा हुआ है जो कि स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है अंदर स्कूल है।

ये काफी सुंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

और एक साइड फ्रीज रखे हुए हैं आइसक्रीम वाले फ्रिज और कुरकुरे चिप्स टंगे हुए हैं और सब बहुत सारी कोल्डड्रिंक बिस्कट --

और बीच में काफी सुंदर एक झूमर भी लगी हुई है।

और नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारी कुर्सियां टेबल लगाई गई हैं।

और कुरसियों के बीच-बीच टेबल भी बनाई गई काफी सुंदर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है।

और ये पानी के बीचों बीच बिजली का खंभा भी है।

और काफी सुंदर फूल से डेकोरेशन किया गया है स्टेज को।

और एक पिलर पे काफी सुंदर तुलसी का पौधा रखा हुआ--

ये एक काफी बड़ा हॉल है और जिसमे आप देख सकते हैं साइड में --

इसमें काफी सारी दुकानें है जैसे की गर्ल्स एंड मेंन्सवेयर की--

मकान नजर आ रहा है नदी के किनारे पे।

ये एक हॉल है जिसमें आप देख सकते हैं सामने एक रिसेप्शन बना हुआ है काउन्टर ।

और मकान के नीचे बहुत सारे लोग घूम रहे है।

ये सड़क है और बारिश की वजह से काफी सारा पानी भरा हुआ है।

और सामने कुरकुरी चिप्स की दुकान है और साइड में।

लोने भी पड़े हुए से टेडीबेयर है और।

और कुछ बच्चे खेल रहे हैं कुछ लेडी बैठी हुई है।

और काफी सुंदर साइडों में से बाउंड्री दी गई है और सामने।

ये एक दुकान है जिसपे आप देख सकते हैं गेट वगैरा खिड़कियां वगैरा मिलती हैं।

और सामने ही एक बोर्ड लगा हुआ है और अंदर रिसेप्शन बना हुआ है जिस काउंटर .

और काफी सारी भूरियां रखी हुई है सामने--